इस तस्वीर मे आप देख सकते है आपको एक मोगरे से बना हुआ हार नज़र आ रहा है जो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है।

इस तस्वीर मे आप देख सकते हैं आपको एक बहुत बड़ी नदी नजर आ रही हैं जिसमे बहुत पानी भरा हुआ हैं। नदी की मै एक--

इस तस्वीर मे आप देख सकते है आपको एक नदी नजर आ रही है जिसमे पानी भरा हुआ है नदी मे आपको एक गार्डन बना हुआ दिखाई दे रहा है।

इस गार्डन में एक रास्ता दिखाई दे रहा है जहा आपको कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे है अम्म इस गार्डन खजूर के बड़े बड़े पड़े है।

इस तस्वीर मे आप देख सकते है आपको एक रास्ता नजर आ रहा है जहा दिवारे उठी हुई है और ऊपर की ओर--

इसमे आपको एक बैंक नजर आ रही है इस बैंक का नाम आय.सी.आय.सी.आय बैंक है इस बैंक के पास आपको एक पीसी ज्वेलर्स की दुकान नजर आ रही है।

उपर चद्दर से लगा हुआ है इस पुल के इस पुल पर आपको कुछ लोग साइकल से जाते हुए दिखाई दे रहे है एक बाइक का काँच नजर आ रहा है।